अकबर है अकबर है और अन्य फोटो है वहाँ। एक क्लासरूम की तरह है जिसमें बहुत प्रकार का लिखा हुआ है।

जिसमे लडकियाँ डांस कर रहे उसके पीला कलर का साड़ी पहने हुई है बगल में भी एक लड़की है।

और इधर चित्र भी बना है जैसे शराब पी रहा है बैठ के दो लो आदमी।

यह पहाड़ पर एक खंडहर जैसा मकान है जो देखने में काफी बढ़िया लग रहा है और इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ भी है।

जमुई के जगह यह बहुत सारा बड़ा गे गेट लगा हुआ है और इधर बहुत सारा पोस्टर साटे हुए हैं।